एक दुकान का इमेज है जहाँ पर बहुत सारी किताबें वगैरह बेचीं जा रही हैं। सामने कुछ बैडमिंटन वगैरह रखे गयें हैं सामने एक बड़ा सा डेक्स दिखाई दे रहा है।

सामने पीले रंग की लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है। सामने रखे काले रंग की कुर्सी के नीचे बहोत (बहुत) सारे काले रंग के बाल गिरे हुए हैं। सामने आईना--

सामने एक बहुत बड़ा सा मस्जिद जेसा कुछ दिखाई दे रहा हैयह देखने में बहुत पुराना है जिसपे बहुत --

यहा पर कुछ स्कूटी जैसे कुछ बड़े बड़े इ रिक्शे खड़े देखे जा सकते हैं जिनका कलर ब्लू और लाल देखा जा सकता है जिनके चारो तरफ कुछ बलून लगे देखे जा सकते है। बलून का कलर बैगनी पीला वल --

यहां पर कुछ व्यक्ति देखे जा सकते हैं कुछ महिलाएं देखी जा सकती हैं पीछे एक बड़ा सा ट्रैक्टर देखा जा सकता है जिसके ऊपर एक सफेद कलर का शर्ट पहनकर लोग जो हैं व्यक्ति चल रहा है।